टैक्सी ड्राइवर है एक आ ऑटो नही उसको चालक बोलते हैं।

का छरकाओ कर रही है।

ये एक पेंटिंग बनी हुई है जो भी बनाई है ये पेंटिंग बड़ी सुन्दर तरीके से बनाई है। इसमें एक लड़का चढ़ता हुआ नजर आ रहा है पत्थर के ऊपर से।